मुज़्ज़फर अअ ऐसा करके लिखा हुआ है और हरा लाल --

वो कुछ ड्रॉइंग कर रहे हैं कागज वगेरा कैची से काट रहे --

अ कत्थी में कलर में यहाँ पर एक कुर्सी भी रखी हुई हैं और उके पीछे की तरफ --

मम मुझे यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बेंच बेंचेस रखे हुए हैं बैग रखा हुआ है एक-दो।

हाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने की तरफ यह शाय शायद एक मंदिर है जिसपे --